पहने हुए है इसके हाथ में एक कागज भी है पीछे की तरफ।

यहां पर बहोत सारे लोग कुर्सियों पर बैठे हुए हैं इन्होंने अलग अलग रंग की कपड़े पहने हुए हैं।

उसके ऊपर बहोत सारी चॉकलेट्स और जो कि है बिस्कुट लगे हुए हैं।

रिंग है एक बारासिंगा भी है चारो तरफ ऊंचे-ऊंचे हरे-हरे पेड़ है।

यहां पर चारों तरफ हरी हरी घास है।

और छोटे छोटे पौधे भी हैं ऊंची ऊंची सफेद रंग की बिल्डिंगे भी हैं चलने के लिए बीच में रास्ता भी है।

ये पेट्रोल पंप है यहां पर पेट्रोल भरने की दो मशीने हैं।

टायर पड़ा हुआ है पीले रंग की एक पट्टी खींची हुई है।

इन्होंने टेबल के ऊपर कॉपी रखी हुई है।

टमाटर है थोड़ी दूरी पर एक महिला खड़ी है इसने पीले रंग का स्वल ढक रखा है।

ये एक पार्क है यहां पर एक लड़की फिसल पट्टी से फिसलती हुई नीचे आई है।

में नीचे की तरफ एक शटर हैं।

बाइक और स्कूटी पर कुछ व्यक्ती बैठे हुए हैं एक व्यक्ती ने नीले रंग की शर्ट पेहनी हुई है।

ये एक बहोत बड़ी नदी है यहां पर बीच में पानी भरा हुआ है ऊपर की तरफ एक लोहे का--